सूर्य रेड कलर का दिखाई दे रहा हो और सूर्य का सूर्य की किरणें पानी में पानी में दिख दिखाई दे रही हैं।

बोडी लोशन कुछ पाउच भी रखे हुए हैं। बहोत दुकान बड़ी दुकान है जिसमें काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है।

ब यहाँ पर और धुप नहीं है यहाँ पर कुछ वृक्ष लगे हुए हैं। साफ़ मौसम हैं।

कुछ बाईक अ एक अ रिक्शा खड़ा हुआ है। एक बाईक खड़ी हु दो-तीन बाईक खड़ी हुई हैं यहाँ पर।

और दो लड़के यहाँ पर गुफ्हा के अन्दर हैं जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं बहार की ओर।

एक चेयर रखी हुई है। एक टेबल रखी हुई है। टेबल के पास एक गिटार टिका हुआ है।

और नदी के आजू-बाजू हरी-हरी घांस लगी हुई है पेड़ लगे हुए हैं। काफ़ी सुन्दर यहाँ पर व्यू है।

बड़ा-सा ग्राउंड है जिसके चारों तरफ हरे व्रक्ष लगे हुए हैं। चारो तरफ भूसा फैला हुआ है।

ये एक प्रतीक्षाशाला केंद्र है। जहाँ पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

जो ग्रीन कलर का ग्राउंड है। इसके चारो तरफ बिल्डिंगे बनी हुई हैं।

यह एक शॉप है एह जिसपर --

और एक ब्लैक कलर की टी-शर्ट में एक व्यक्ति कार की तरफ जाता हुआ दिख रहा है।